और सामने की ओर ग्रे कलर के परदे लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।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

और हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक परचून की दुकान दिखाई दे रही है और दूसरी साइड मिठाई भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

घर के आगे की ओर बहुत बड़ा सा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक डी_जे का पूरा सेटअप भी बनकर खड़ा हुआ है।

इसमें सामने की ओर चार पांच घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि सब सब एक जैसे हैं।